सिमेन्ट बन रहा है और ईटा भी है सरिया भी लगा हुआ है।

देखिये गाइज़ ये लोग स्टेज सजा रहे है फूलों से और ये कुछ लोग खड़े है।